यह चित्र मे हमे नीला आसमान और हर जगह पानी दिख रहा है पानी के झरने दिख रहे है और उस--

सजाया गया है ऊपर कुछ गोल-गोल भी लगाया गया है।

और उप अ ब्रिज का नीचे का हिस्सा भी दिखाई दे रहा है।